माथा एक दिख रहा है।

लड़की लोग का फेस ढका हुआ है।

एक आदमी बाइक में बैठ रहा है साइकिल में चलते हुए भी दिख रहे हैं।

एक बच्चा बाहर में चलते हुए दिखाई दे रहा--

छोटा सा वाइट कलर का--

व्हाइट कलर का कुछ टंगा हुआ दिख रहा--

बड़ा सा पार्किंग हॉल दिखाई दे रहा--

गाड़ी का गैरेज जैसा दिख रहा है क्योंकि यह हमें व्हाइट कलर का गाड़ी जो उ आगे साइड का खुला हुआ है।

और लोग टंगा हुआ है और नीचे में--

गेट भी बनाया हुआ है रोड से।

ये एक जंगल लगता है।

तीन चार आदमी बैठा हुआ है तीन लड़का एक लड़की फेस कार्टून से ढका हुआ जैसा दिख रहा है।

वेलकम होम का गेट दिख रहा है।

सोफा एक दिख रहा है टेबल एक दिखाई दे रहा है।

येलो ऑरेंज कलर का कुछ लगा हुआ है यहाँ में।

एक बड़ा सा पेड़ दिख रहा है।

दो ठो पर्दा जैसा लग रहा है व्हाइट कलर का दिख रहा है।

जो कि घर बन रहे जमीन में सूखा पत्ता गिरा हुआ दिखाई दे रहा है।

एक फेन है डेकोरेट करके है ये।

एक आदमी खड़ा होके कुछ बता रहा है लग रहा।

कुआं जैसा भी दिख रहे हैं।